मेरको एक पार्क टाइप का दिख रहा है यहाँ पे किसी हम्म महारानी लक्ष्मी बाई का अ मोम का पुतला दिखाई दे रहा यहाँ पे एक घोडा भी दिख रहा है एक बाइक्स भी दिख रही है कुछ लोग भी दिख रहे है वहाँ पर कुछ बड़ा मीनार सा बना हुआ है।

और पीछे एक कार दिख रही है पीछे एक खंबा भी दिख रहा है यहाँ पर रोड है यहाँ पर् ऐसा लगता है जैसे बस स्टैन्ड है बसों से हमें कही का कहीं भी अगर हमें जाना पड़ता है तो हम वहाँ तक जाने के लिए सफर तय करते है और आराम से वहाँ पहुचते है।

व्हाइट शर्ट की सलवार पहनी हुई है और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है उसमे अपने सिर को बांधकर रखा हुआ है कुछ लोग मंदिर मे भी खड़े दिखाई दे रहे हैं मंदिर हैं घर मे भी खड़े दी--

कुछ महिलाएं है आपको जो दिख रहे है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैदेखने मे और कुछ इनके ऊपर रखा भी हुआ है एक बच्चे भी खड़े है महिला डिजाइन से पोज देते हुए दिख रही है स्त्री भी खड़ी हुई है।

यहाँ पे मातारानी की फोटो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बहोत सारी मतलब मंडप टाइप की महिलाएं दिख रही हैं महिलाएं बहोत सारी पूजा कर रही हैं रंग-बिरंगे गुब्बारे भी लगाए गए हैं।

पेड़-पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी प्रदूषित हो जाएगा इसीलिए अपने जीवन मे हर व्यक्ति को जीवन मे पाँच कम से कम पाँच पेड़ लगाना अनिवार्य है और पेड़ो से हमे जान मिलती हैऔर उन पेड़ों को पोल पालना पोसना सबसे बड़ा धर्म काम पुण्य का काम होता है।